यह एक दुकान है। यहां पे बहोत सारे चिप्स नमकीन टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम --

काटे हुए हैं या फिर एक खेत भी है।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

आदमी बैठे हुए है नींबू पानी का गिलास रखा हुआ है।

यहां पे बैठने के लिए मेज और कुर्सी रखे हुए हैं।

ब्लैक कलर की पैजामे पहनी हुई है यहां पर बहोत सारे खिड़कियां लगी हुई है यहां पे कैलेंडर लगा हुआ है बाहर बहोत सारे घसा उग रही है।

यहां पे घर बना हुआ है यहां पे रस्सी लटकाई गई है कपड़ा सुखाने के लिए यहां पे टीन लगी हुई है यहां पे--

भीमराव अंबेडकर के एक फोटो लगी हुई है।

साइड में दो कुर्सियां लगी हुई हैं।

व्हाइट कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है यहां पे। लगी हुई है यहां पे बहोत सारी--

यहां पर लेडिस खड़ी है उसने मास्क लगाया हुआ यहां पे बहोत सारी बाइके खड़ी यहां पे बहोत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहां पे एक आदमी के हाथ में हेलमे--

यहां पर एक आदमी जा रहा है उसके हाथ में बैग है।

टाइल है यहां पे नीली कलर की टीन भी बीछाई हुई है ऊपर --

व्हाइट कलर की दीवारे बनी हुई है यहां पे पेड़ पौधे लगे हुए है।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

यहां पे मेज और कुर्सी रखी हुई है मेज पर दो रिमोट रखे हैं पानी की बोतल रखी हुई है।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है यहां पे टेबल पर तीन चार प्लेट रखी हुई है यहां पे पुलाव रखा हुआ--

यहां पे एक बच्चा पे पेड़ पर चढ़ रहा उसने पीले कलर की--

खुला हुआ है यहां पे बहोत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

यह एक विद्यालय की तस्वीरें है यहां पे बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं।

फोन चला रहा है उसने काले कलर के टोपी पहन रखी है यहां पे एक लैपटॉप है यहां पे एक--

लगी हुई है यहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

आदमी खड़े होकर बात कर रहे हैं यहां पे एक दुकान भी है।

कुर्सियां रखी गई है यहां पे बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

यहां पे शैंपू चिप्स कुरकुरे नमकीन बिस्कुट भी हैं।